सामने बोर्ड आगे पेड़-पौधे लगे हुए है।

पहाड़ है जहाँ पहाड़ के ऊपर एक टावर लगा हुआ है।

आदमी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे देखते हैं की कौन --

यह एक सैलून का दुकान है जहाँ पर एक --